और बहोत सारे बास भी है और भी पेड़ दिख रहे है।

अंदर में एक नींबूमिर्ची भी टांगा हुआ है एक झूमर भी टांगा हुआ लाइट्स भी हैं।

और पपीते के भी पेड़ है।

बहोत बड़े-बड़े से पेड़-पौधे या घास फुस लगे साइड साइड मे पहाड़ जैसा दिख रहा है।

हॉल के साइड में बहुत बड़ा सा मैदन है।

और पेड़ भी दिख रहै है एक पंछी आसमान में उड़ रहा है।